इसमें कुछ दिवार भी नजर आ रहा है और प्लेट भी रखा हुआ है

चिम्किल पे बीछा करके और तराजू भी रख ले हैं।